यह तो एक रोड है रोड के ऊपर एक ब्रिज भी है यहां ज्यादा लोग गा गाड़ी पे जा रहे हैं।

ये तो एक तरफ कार पार्किंग एरिया जेसे दिखा रहा है यहाँ दो बड़ा बड़ा पेड़ है और बिच में एक व्हाईट कलर का कार है।

ये तो एक सो-शॉप जेसी है यह ज्यादा सामान हैं ऊपर सिल्लिंग पे लाइट्स भी दिखा रही है ये और कलरफुल का--

ये तो एक बिल्डिंग का कनेक्शन हो रहा है यहां एक आदमी खड़ी होकर फोटो की फोटो ले रही है।

ये एक सुइमिंग पुल है और वो--

और एक अह कैब का कलर येलो कलर है एक आदमी व्हाइट कलर का शर्ट पहना--

एक पेट्रोल पंप का प्लेस है यहां एक वाइट कलर गाड़ी है कार है उधर वह एक आदमी ब्लू कलर शर्ट पहन के--

ये एक चर्च की एंट्रेंस जैसे दिख रही है यहां ज्यादा लोग खड़ी खड़ा है।

तरह तरह की सब्जियां हैं अह एक--

यहाँ जादा लोग खड़ा हुआ है यह दो कारस है दो कार्स भी ग्रे कलर का है यहाँ मर्द जादा --